यहां पे सा बहोत सारी फुलवारी है।

दो गेट है एक जगला है ऊपर तीन जागले भी है।

यहां पर बहोत सारे पेड़ है जंगल सा है मिट्टी भी है।

यहां पे बहोत सारी कुर्सी भी ए एक बाइक खड़ी है।

यहां इसकी छवि ए कुछ पत्ते दिखाई दे रहे हैं।

पे एक लाल सा कचरा भी बड़ा हुआ है।

कुछ साइकिल पर एक आदमी अमरूद बेच रहा है।

ये यहां पे पीला झंडा भी लगा हुआ है।

और यहां पे गोल्डन कलर की लाइनें खींची हुई हैं डबल बेड पर।

यहां पे बहुत स उं एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नव द--

यहां पे रिस्टोर सा भी दिखाई दे रहा यहां पे अ खिड़की भी दिखाई दे रही है।

एक आदमी उम्म कपड़े ले जा रहा है।

यहां पे पत्ते भी दिखाई दे रहे हैं पेड़ भी बहोत सारे हैं।

यह एस_टी पैटर्स टोर्च है।

यहां पे दो मूर्ति भी है।

यहां पे दो मूर्ति भी यहां पे दिखाई दे रहा है।

और यहां पे अह यहां पे टाइल्स लगी हुई है।

यहां पे पेड़ भी है।

यहां पे कोल्ड्रिंक्स भी है।

और यू घर में यूज करने का दाल भी मिलती है।

यहां पे बीच में घास भी दिखाई दे रहा है।

यहां पे तार सभी खींच रहा है।

ये साइकिला की एजेंसी दिखाई दे रही है।

और यहां पे एक आदमी पोस्टर में दिखाई दे रहा है।

यहां पे एक पोस्टर भी दिख रहा हैं।

एक कृषि सलाह केंद्र एवं शाही कैंटीन है।

यहां पे लकवा फलिस का इलाज होता है।

यहां पे अपना हाईवे स्टोर्ड स्टोर है।

और यहां पे शटर भी है।

यहां पे अम्म ए_सी भी लगी हुई है।

यहां पे पीले और व्हाइट फूल दिखाई दे रहे है।

और पीछे पीले अं की डेकोरेट हो रही है पीले।

और यहां पे कुछ पता नहीं क्या दिखाई दे रही है यहें दो बोतले सी है।

यहां पे आसमानी भी और चॉकलेट भी चॉकलेट कलर भी --

यहां पर थोड़ी थोड़ी धूप सी दिखाई दे रही है।

यहां पे बहोत सारी बाईके और यहां पर बहोत सारे आदमी खड़े हैं।

यहां पे बिरयानी ले रहे है।

यहां पे फोन पे भी दिख रहा है और बहोत सारे कपड़े भी है।

श्री पर जयसवारी बुक ली--

यहां पे बहुत से आदमी भी खड़े है और कुछ तो शॉप के अंदर--

जे कार्यालय जिले विध्यालय निरीक्षक जनपद शामली है।

और यहां पे नीचे भी घास दिखाई दे रही है।

ऐ सर कुछ समझा रहे हैं।

और यहां प मम बरफ सा दिखाई दे रहा है।

और यहां पे एच आर फोर फाइव सी सेवन फोर एट फोर ये गाड़ी के प्लेट का नंबर है।